पेट्रोल भरा रहे हैं बहुत सारे गाड़ी भी लगा हुआ है ट्रक भी लगा हुआ है मैजिक भी लगा हुआ है मोटरसाइकिल भी लगा हुआ है बहुत सारे अ गाड़ी हैं बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है बहुत अच्छा लग --

एक बहुत अच्छा घर है बहुत सुंदर दिखने में घर लग रहा है उज्जर और नारंगी कलर से रंगा हुआ है खिड़कियां भी अच्छा लग रहा है देखने में गेट भी अच्छा लग रहा है देखने में और गेट के आगे गमला में फूल सब भी रखा हुआ है सभी कलर का फूल है।

अच्छा दिखने में लग रहा है लाल कलर का गाड़ी है इसका लाइट भी अच्छा है बहुत अच्छा गाड़ी है बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है।

एक बहुत अच्छा दुकान है जहाँ पर अम्म खेलने वाला सामान सब मिलता है यहाँ बहुत सारा सामान है खेलने वाला गुड़िया है खेलने वाला और बहुत सारे खेलने वाला सामान है बहुत अच्छा दुकान है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ।